एक सोफा जैसी कुर्सी और एक मेज रखी हुई है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग जैसे कि क्लॉक टायर की तारीके से दिखाई दे रही है।

वो चेयर एक टेबल पड़ी हुई है दीवार में एक एल_सी_डी लगी हुई है।

यह एक पार्क एंड वॉटर रिजॉर्ट की फोटो है।

नीचे नमकीन भी रखी हुई है।

बिल्डिंग के तरफ चारों शीशे लगे हुए हैं।

इसके अन्दर पुराने इतिहास के कुछ चीजें एवं नक्शा रखा हुआ है।

आसपास दिवालों में महान पुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं।